दे रहे हैं और महिला भी वहां पे है दुकान में--

किसी घाट का लग रहा है जो तालाब के साइड अह में ही बना हुआ है उसके ऊपर एक पेड़ दिख रहा है।